यहाँ पे कुछ अलग-अलग रंग के दीवाले पुती दिखाई दे रही हैं यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है।